और ये लोहे का गेट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जनपद शामली और कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है।

दूल्हे के सामने मेज रखी हुई है जिस पर कवर चढ़ा हुआ है और एक फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है।

यह पिक्चर एक कार पार्किंग एरिये की है जिसमें ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का जाल लगा हुआ है।

एक पुरुष को सामने की ओर दिखाया गया है जिसके फेस को कवर किया गया है।

यह पिक्चर एक ढाबे की है जिसपर ऊपर बैनर लगा हुआ है जिसपर लिखा है कि हापुड़ वालों का मशहूर शिवा टूरिस्ट ढाबा और नीचे की ओर खाने के सामान की भी लगी है।

जिनमें अलग अलग सामान रखा हुआ है। इसमें हमें रिफाइन की कैन साबुन बूस्ट कपड़े धोने की साबुन नहाने की साबुन एरियल का सरफ दिखाई दे रहा है।

जो नाव है वो लकड़ी की है और नाव आसपास है।

इस पिक्चर में हमें एक मंच दिखाई दे रहा है जिसपर बहुत सारे बच्चे आगे की ओर लाल कुर्सियों पर बैठे हैं।

जोकि साइकिल शोरूम है इसमें ऊपर लाइट पड़ रही है।